यहाँ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इसमें लोग य स्टूडेंट पढ़ते होंगे --

इसमें एक पोल्ट्री फॉर्म की तरह दिख रहा है यह बहुत बड़ा विशाल है इसमें बहुत बड़ी खिड़की की तरह दिख रहा है इसके आस-पास दो-तीन घर दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत बड़ा स्थान है जिसमे बहोत से गाड़ी एवं मोटर साइकिल दिख रहे है जो की कुछ उठाने या ले जाने के काम आते है इसके आस-पास बहोत से पेड़-पौधे दिख रहे--

यह एक चर्च है यह बहोत बड़ा एवं विशाल है इसमें बहुत सारे फेन लगे हुए है इसमें लोग आकर के प्रेयर करते है क्रिश्चियन लोग--

इस यह बहोत बड़ा दिख रहा है और यह अस्पताल इसमें अस्पताल लिखा है इसमें सजावट हुआ है इसमें एक फैन दिख रहा है एक साइकिल दिख रहा है।

इसमें इसके पास-पास लोग इसको देखने के लिए आते होंगे और इसके आसपास बहुत से पेड़-पौधे है।